दो से तीन गेट बनाके सामने तीन से चार पर्दे दिखाई--

मुझे इस फोटो में सामने --

ऊपर लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं फिर टिन लगी हुई दी--

दिखाई दे रहें है आजू बाजू कई सारे पेर पौधे है इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए एक रोड कही पे --

कई सारे फुगे उग्गे लगे दिखाई दे रहे हैं मॉल कि शॉप है सामने कि ओर--

रखी है सारे ट्रे स्टील के डब्बे प्लास्टिक के डब्बे प्लास्टिक की ट्रे रे कप वप कई सारी चीज़ें छोटे-छोटे डिब्बे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं कप वप के।

साइड में एक इंसान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर से सब कोई पंडाल सब को बना हुआ दिखाई दे रहा है सामने --

एक इंसान दिखाई दे रहा है जो--

इतनी सारी उं पट्टियों पिलर सब पट-पट्टीय पट्टियों गई हैं सारे शीशे इसे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं नीचे की ओर ब्लैक कलर की मैट बिछी हुई दिखाई दे रही साइड में --

प्लास्टिक लगाई गई है जिसके साथ थर्माकोल के सारे गमले बने हैं ढेर सारे तुलसी के गमले रखे गए हैं।

गाड़ी मोटर आती जाती दिखाई दे कई सारे इंसान सामने को आते जाते दिखा दे कई इंसान खड़े हुए दिखाई दे रहे सामने की ओर साइकल खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में सेंटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है छत ढल चुका है सेंटिंग लगाई लगी हुई दिखाई दे रही की हिसाब से बांस के डंडे अंडे लगे के डंडे लगे दिखाई दे रहे--

पेंटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है साइड में नीचे पड़ी हुई है खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

नीचे की ओर टाइल्सें लगाई गई हैं जो व्हाइट कलर की टाइल्स लगी दिखाई दे--

सूरज निकला नहीं है मतलब पूरा आसमान साफ दिखाई दे रहा है छत में बीम बांहते हुए दिखाई दे रहे है कई सारे इंसान--

कई सारे काम करते हुए दिखाई नीचे के जैसे दिखाई एक इंसान कागजों के सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जेब में हाथ डाल कर खड़ा हुआ है।

लोहे के शायद गेट लगी हुई दिखाई दे रही है रात का समय है पीछे की ओर बस नीली एक और पिंक कलर की लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है पीछे की ओर --